इस फोटो मे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे तरह तरह के सामान रखे गए है अनाज यहां पर दिखाई दे रहा है।

बोरियों मे कुछ आटा है दाल हैं बोतलो मे कॉल्ड्रिक रखी गयी है ऊपर कुछ लाइट और ट्यूब लगाए गए है कुछ लोग यहां पर खड़े हैं।

इस फोटो में एक दुकान है जिसमे बहुत बड़ा फ्रिज रखा गया है और तरह-तरह के इसमें आइस क्रीम दूध और बटर रखे गए हैं। पास मे कुछ फल फ्रूट रखे गए हैं।

इस फोटो में कार्यालय दिखाई दे रहा है जिसका कलर पीला है| बाहर कुछ गमलों में पौधे लगाए हुए हैं अंदर एक आदमी है खिड़कियां लगी हुई है।

यह एक विद्यालय दिख रहा है जिसके बाहर एक खाली मैदान है और बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है जो की पर्यावरण की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं विद्यालय मे बहुत सारी खिड़कियां भी हैं|

इस फोटो में एक बाजार दिखाई दे रहा है। जिसमें बहुत सारे प्याज बेच रहे हैं लोग खरीद रहे हैं कुछ टेंपो यहां से जा रही है लोग जा रहे हैं ऊपर पत्र लगे हुए हैं।

यह एक बहुत ऊंचा झरना बह रहा है। पत्थरो की चट्टानें है जिसपर लोग खड़े हैं और --

इस फोटो में झरना बह रहा है। जिसका पानी नीचे एकत्रित हो रहा है जिसके नीचे बहोत सारे लड़के नहा रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं।

फूल गोभी मटर फली खीरा और बैंगन यहां पर रखे हुए हैं भिंडी भी है।

कच्चा नारियल भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हैं रंग-बिरंगी छतरी यहाँ लगी हुई है।

यहाँ एक गोडाउन दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बोरों में प्याज रखे गए हैं।

यहां एक बाजार दिखाई दे रहा है जिससे समेटा जा रहा है कुछ लोग अपनी सब्जी की दुकान समेट रहे हैं।